इस ईमेज में एक रोड दिख रहा है जिसके अगल अगल-बगल बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंग दिख रही है काफी सारे सांप दिख रहे हैं बहुत से लोग दिख रहे हैं।

काफी सारे गाड़ी मोटर दिख रही है एक घंटा घर दिख रहा है जिसमें कलरफुल लाइट्स लगी हुई काफी सारी लाइट्स है आसमान दिख रहा है।

यह किसी मंदिर या मस्जिद का तस्वीर है। जहा काफी सारे लोग बैठे हुये है एक कि दिशा और किये हुये।

इस कि इमेज में एक रोड दिखाई दे रहा है। जहा बहोत गाडी मोटोर चल रही है और उपर बडा बडा-बडा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है। नीचे मे बहुत ज्यादा दुकान लगी हुई है।

कुछ एडवन्स कंपनी का डीसाइन है। दुकान है। तो कूछ और का डीसा दुका --

काफी सारे लड़कियों के कुर्तिया रखे हुई है कुछ चुन्नी दिख रहे है काफी सारे कपडे --

कुछ को एक लेडीज भी इस मे दिखाई गयी है जो की बाजा बजा रही है इस मे बहुत सारे बाजा है पर्दा लगा हुआ है पीछे।

कूछ अ स्टीकर लगे हुये है। एक बडा सा बलून दिखाई दे रहा है। कुछ पाणी कि बोटल दिखाई दे रही है।

बहुत सारी दिवाल दिख रही है खंबे दिख रहे है पेड़ पौंधे दिख रहे है।

सारे लोग बैठे हुये दिखाई दे रहे है। इसमे से काफी लोग छाता लगाये हुये है और बहुत सारे कॅप लगाके बैठे हुये है। आसमान दिख रहा है। खिडकीया दिख रही है।